और बाहर कुछ कारें भी खड़ी हुई है।

जो कि बहोत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है।

यहां पर कुछ सामान टंगा हुआ है जैसे की चिप्स --

और इसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ है जिस पर मलिक कार पार्किंग लिखा हुआ है।

जिसके ऊपर दो गद्दे और एक टेबल साइड में रखी हुई है।

यह एक दीवार है जिसपर एक बहुत ही सुंदर तस्वीर का चित्र किया गया है।

और इनके बराबर में बोहोत बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं।